और यह टंकी यहां पे व्हाइट कलर की दिख रही है साथ में ही हमें यहां पर रेलिंग दिख रही है जो ब्लैक कलर की है और साथ में ही हमें यहां पर--

भी नजर आ रही है वाइट कलर और ब्राउन कलर ब्लैक कलर की यहां--

व्हाइट कलर की बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग के छत के ऊपर एक व्यक्ति है। पाटीदार यहां पर हमें--

दो पेन दिखाई दे रहे छोटे छोटे कंटेनर --

यहां पर हमें कुछ गाड़ियां दिख रही है सामने एक--

बैंक दिख रहा है बैंक के बाहर ग्रीन कलर का कलर हुआ--

कल की बिल्डिंग दिख दिख रही है वाइट कलर की खिड़कियां दिख रही--

इस फोटो में हमें चेयर दिख रही है साथ में एक पौधा यह येलो रंग का गमला दिख रहा है साथ में ही ब्राउन कलर का यहां पर हमें --

रूम हमें हल्का सा पिंक कलर का दिखाई दे--

इस फोटो में हमें बहोत सारा--

का ब्लैक पीछे हमें ग्रीन कलर का सोफा भी दिख रहा--

इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का बॉल भी लगा हुआ--

में ही यहां पर बलफ जले हुए दिख रहे है कुछ लोग वॉल काटते हुए नजर आ रहे हैं सा--

इस फोटो में हमें डायमंड शॉप दिख रही हैं।

स्कूटी का कलर हमें यहां पर पिंक ब्लैक व्हाइट दिख रहा--